पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं इसमें छोटा एक पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं इसमें पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं इसमें सुखा झाड दिखाई दे रहा है।

घास दिखाई दे रही है इसपे हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है इसमें आ-- लोहे की बौंडरी दिखाई दे रही है इसमें सफ़ेद पानी भी दिखाई दे रहा है।

शॉप दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारी बानियाने स्वेटर दिखाई दे रही है जिसका कलर रेड रेड ब्लैक दिखाई दे रहा हैं और भी--

तो उसके निचे निचे हरे कलर का कालीन बिछी हुई दिखाई दे रही इ --

स्टेशन दिखाई दे रहा है जिस पे जिस पे तीन कुत्ते दिखाई दे रहे है जिसका कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है गिट्टी दिखाई दे रही है जिसका इस पे पटरी भी दिखाई दे रही है इस पे बिजली का खम्भा दिखाई दे रहा है।